पहिये वाली और यहां पे कई बैग धरे है।

इधर भी है दो पेंटिंग उधर भी दो और यहां पे एक पेन भी धरी है।

काले अंगूर और हरे अंगूर भी है और केले पपीते--

यहां पे बहोत सारे आदमी है तीन चार।

और ऊपर प्रधान कार्य लिखा है।

इन देखने का और गेट पर ताड़ा भी खुला हुआ गेट पर ताड़ा लगा हुआ है एक--

और बोतल पे ओ लगा है पानी है बोतल में स्प्रे करने की बोतल का पीछे एक घड़ा भी है।

ये एक हॉस्पिटल है यहां पे बच्चे एडमिट हैं छह सात।

छ सात आदमी काम कर रहे हैं एक आदमी ने सिर पे कट्टा उठा रखा है और एक ट्राली सी पे कट्टे धर रखे हैं यहां पे।

और कुछ चुनरी के ऊपर धरी है सामान।

कुछ किवाड़ भी पड़ा है यहां पे और एक गाड़ी बराबर में है।

कुछ यहां पे खंभे भी हैं उन पे सफेद सफेद डब्बा लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे कपड़े टंगे हुए है और बहुत सारे आदमी भी हैं यहां पे।

ये एक ही आदमी है। एक लुगाई परे कू जा रही है।

और एक वो बाल्टी धरी है ग्रीन एक पीले रंग की केन

और एक आरी धरी है और एक यहां पे छोटा सा बॉक्स धरा है डब्बा।

ऊपर अपर में बहोत सारे झाड़ी है खेत भी है बराबर में।

बहुत सारे आदमी है कुछ बैठे हैं कुछ खड़े हैं और बाइक भी है।

टीन डली हुई है ऊपर और इसमें कुछ पंखे लगे हुए है।

यहां पे और ऊपर एक कागज सा दे धरा है।

और एक में चेयर है स्टील की।

यहां पे एक लुगाई बैठी है जिसका मुंह ब्लर किया है चमक नहीं रहा और यह माइक ले रही है।

बहोत सारे आदमी चमक रहे है।

इस जो बलब बल्ला है और यहां पे नीचे बहुत सारी बुक है नीचे भी लगी हुई है बुक ।

और ऊपर है एक नदी सी है। बोहोत बड़ा पानी हो रहा है वहां। उसके ऊपर है पहाड़ है। बोहोत सारे पेडें भी हैं।

यहां पे बोहोत सारी लुगाई बैठी है। कुछ का मुंह बलर किया हुआ है। चमक नहीं रहा कुछ से चमक रही हैं।

और अंदर लिखा है नीलू सैलून ।

और पीछे दो लोग ऊपरा को जा रहे एक लुगाई आ रही है।

पैरों के रिंग में भी व्हाइट है और इसके पीछे एक मशीन खड़ी है पेले रंग की।

बराबर में एक भी चमक रहा है।

बहुत सारे आदमी हैं और कुछ उनमें लुगाई है।

और कुछ पन्नी सी उट भी है चमकीली सी।

यहां पे ऊपर लाइट लगी है और नीचे चार पांच आदमी है।

एक बेंच लगी हुई है लंबी सी उसके ऊपर फल धरे है पैक हुए टोकरी में।

और बराब्बर में एक कुर्सी धरी है।

यहां पे तीन शटर है।

तीनों बंद है लाल रंग के और नीचे एक बाइक खड़ी है।

यहां पे बहुत सारे टायर भी दबे हुए हैं आधे।

और बराबर में कुछ झाड़ियां है घास की।